दिखाई दे रही रोड दिखाई दे रहा है रोड पर बहुत सारे पैड पौधे दिखाई दे रहे है एक मकान के पास एक गमला रखा दिखाई दे रहा है जिसमे एलोवेरा लगा हुआ दिखाई दे रहा है एक बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

बोहोत सारी कुर्सियां और टेबले लगी हुई दिखाई दे रही है कुर्सियां टेबल अलग अलग कलर मे दिखाई दे रही है ओ पेलेस का कलर गोल्डन दिखाई दे रहा है।